यहाँ पे मिस्त्री ऊपर चढ़ के मकान बनाए जा रहा है। साइड में एक आदमी खड़ा है। साइड में एक आदमी पत्थर ले के जाया जा रहा है और एक आदमी नीचे देख रहा है। ये मकान अभी बन के रेडी नहीं हुआ है। बस बनने --

औरत पानी डाल रही है ।

देख सकते हो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम चाय सुट्टा बार है। कडल दा कुल्हड़ लिखा है। यहाँ पे एक दो आदमी है। नया रेस्टोरेंट लग रहा है जो कि आदमी लोग यहाँ आता है चाय पीता है खाना खाता है पिज़्ज़ा विज़्ज़ा ऑर्डर करता है और बी पेन बिल पे करके घर चला जाता है।